और यहाँ पर बहोत लाइट बत्ती भी नजर आ रहें हैं। पूरे सारे बगल में घर-घर ही नजर आ रहे हैं।

एक एल.ई.डी. नजर आ रहें हैं। उसमें जो है एक ब्लैकबोर्ड भी है। एक लड़की भी नजर आ रहें हैं और पुरे --

जो है नेक एन तालाब भी नजर आ रहें है और आसमान भी नीले-नीले दिखाई पड़ --